बैग लिया हुआ है।

पीछे में एक हेलमेट है जो उजला और काले कलर का है।

एक स्कूटी पर एक आदमी बैठा हुआ है और मोटरसाइकिल पर बहुत सारे आदमी बैठे हुए हैं।

पार्क एक बोर्ड लगाया हुआ है जो स्टील का बोर्ड है।

एक ब्लू कलर का बैलून है एक लाल कलर का बैलून है एक उजले कलर का बैलून है।

पर पौधे भी हैं जो छोटे छोटे हैं।

यह दिन का समय लगता है।

ये दो कलर के डब्बे हैं एक लाल कलर का डब्बा है एक उजले कलर का डब्बा --

सारे पेड़ हैं जो हरे कलर के पेड़ हैं।

जो टोपी है वह पीले कलर का है।

एक लाल कलर का है एक ब्लू का उजला कलर का है।

सिल्वा कलर का है उसमें बहुत सारे कचड़े हैं।

उजला कलर का दरवाजा है।

बंद है एक दरवाजा भी है।

पीछे प्लास्टर किया हुआ है।

यहां पे बहुत सारे पेड़ हैं जो हरे कलर के पेड़ हैं।

जो उजले कलर के है वो ईट से बनाये हुये है।

उसमें भी लाइट जल रहा है जो पीले कलर के लाइट हैं।

बगल में भी बहुत सारे बिल्डिंग है।

बहुत सारे बैलून भी लगा हुआ है जो अलग अलग कलर है।

दीवाल का रंग है बु ब्लू कलर बहुत सारे सर है।

नीचे में दो कुर्सी लगा है अंदर में कार लगाया हुआ है जो उजला कलर का कार है।

अलमारी पर बहुत सारे डब्बे में रखा हुआ हैं और चॉकलेट भी हैं।

एक हेलमेट भी रखा हुआ है जो लाल कलर का हेलमेट है।

बगल में बहुत सारे आदमी हैँ।

जो अलग अलग कलर के कपड़ा पहने हैं।

सर स्वेटर पहने हुए हैं।

पर बहुत सारे सामान रखे हुए हैं।

यहां पे बहुत सारा लाइट जल रहे--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

यह एक किराना स्टोर का दृश्य है।